यहां पर एक-दो एक दुकानदार पैसा ले रहा है ।

और शैंपूल और उ सबे हैं और चॉकलेट है बड़ी खाने का मन --